यह एक रेस्टोरेंट है इसमें बहुत सारे लोग है।

यह एक नदी है इसके साथ इसके सामने आधा पूल बना हुआ है इसमें पानी भरा हुआ है ऊपर बादल छाया है।

यह एक कॉलेज है यहां पेड़-पौधे लगे है एक ग्राउंड है यह क --

कॉलेज सफेद कलर से पुता हुआ है इसके ऊपर लाल-लाल लकीर है आसपास से डोरिया जा रही है।

ब्लैक कलर के सोफा है रेड कलर की कुर्सियां है व्हाइट कलर के टेबलस हैं एल_ई_डी लाइट लगी हैं।